ये बोट यलो ॲण्ड ऑरेंज कलर की हैं।

इसमें काफी उल्टे करके चाय के कप --

इस शॉप में काफी सारे रैक--

ये इंडिपेंडस के स्पीच एक बच्चा दे रहा है।

ये ग्रीन कलर का ट्रैक्टर है।

इस शॉप में मकैनिक का काफी सामान पड़ा है।

इसमें कुछ स्क्रू प्लास नजर आ रहे हैं।

ये काफी अंधेरा दिखाई दे रहा--

बाहर दान पात्र की पेटी पड़ी हैं।

ये कार की तस्वीर है।

बुरी तरह बिखरी हुई है पीछे एक आदमी भी खड़ा है उसने--